इस चित्र मे जो लहगा दिख रहा है उस लहगे का जो कलर है वो ऑरेज रेड ग्रीन और गोल्डन कलर है।

कुछ ब्लैक कलर की है कुछ ब्लू कलर की है कुछ ग्रीन कलर की दिख रही है कुछ वाइट कलर की दिख रहा है इसमे एक कुर्सी भी राखी हुवी है जो गोल्डन कलर की है।

इस चित्र मे जो विद्यालय दिख रहा है इस विद्यालय पर जो कलर पुता हुआ है वो लाइट पिंक और रेड कलर पुता हुआ है इसका जो बोट है वो व्हाइट कलर का है इसका जो चेनल गेट है वो --

इस चित्र में जो सड़क दिख रही है इस सड़क पर कुछ लोग दिख रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी दिख रही है कार भी दिख रही है ऑटो भी दिख रहा है।

उसके आस पास कुछ बोर्ड भी लगे हुए है और उस मकान का जो गेट वो येल्लो एण्ड ब्लैक कलर का है इस मकान के आस पास कुछ पेड़ भी है जो ब्लैक एण्ड ग्रीन कलर के है।

इस नदी के आस पास कुछ मकान भी दिख रहा है जो ब्लू एंड ग्रीन कलर के दिख रहा है इस नदी के आस पास कुछ पेड़ भी है जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।

इस चित्र मे जो ब्रिज बन रहा है उस पर जो कलर पूता हुआ दिख रहा है वो ग्रीन सिल्वर ब्लैक और पर्पल कुछ ऑरेंज ऑरेंज कलर सा भी दिख रहा है।

इस ब्रिज के आस पास जो जगह दिख रही है वो ऑरेंज ग्रीन एण्ड कुछ पर्पल कलर की दिख रही है इस ब्रिज के आस पास कुछ लोग भी है।

इस चित्र मे जो बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग पर जो कलर पुता हुआ है वो ग्रे और लाइट ब्लू कलर पुता हुआ है।

इस चित्र मे जो ग्राउन्ड सा दिख रह है उस ग्राउन्ड मे मोर दिख रही है जो ब्लू ग्रीन एण्ड ब्लैक और सिल्वर ब्राउन कलर की दिख रही है।

इस क़िले के आस पास कुछ पेड़े भी दिख रही है जो ग्रीन एंड ब्लैक दिख रहे हैं इस किले का जो ग्राउंड है सिल्वर एंड परपल कलर का है।

लाइट पिंक और ब्लू कलर का दिख रहा है इस बिल्डिंग बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है और कुछ पेड़ भी दिख रहे है और कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

इस चित्र मे हॉल दिख रहा है इस हॉल में जो कलर पुता हुआ है वो गोल्डन एंड वाइट कलर है इस हॉल में जो परदे लगे हुए है वो पर्पल कलर के दिख रहे हैं इस हॉल में कुछ बेंचे भी लगी हुई है जो ब्लैक और वाइट कलर की दिख रही हैं।

इस चित्र मे जो नदी दिख रही है इस नदी का जो पानी है वो ब्लैक ग्रीन और कुछ गोल्डन कलर का दिख रहा है इस नदी मे--